कुछ गाड़िया दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग खड़े है जालीदार गेट दिखाई दे रहे है |

और कुछ सटिफिकेटे दिखाए दे रहें हैं एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है।

पत्थर रखे हुए दिखाई दे रहे है लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

काले सफेद रंग के फुग्गे दिखाई दे रहे है।

परदे दिखाए दे रहे हैं कुर्सीया दिखाई दे रही है एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

आट्र्स भी दिखाई दे रहे है।

एक मशीन दिखाई दे रही है।

और जो कि लाल और सफेद कलर में है।

एक व्यक्ति बाहर खड़ा हैं और--

यहाँ पर एक--

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है जो की हरे रंग के--

एक बिस्टिक रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

एक दीवार दिखाई दे रही है।

झंडे के लिए सीट दिखाई दे रही है एक बड़ा गेट दिख रहा है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहें है।